दुकान है। यहाँ पे बाल कटिंग होती है।

ये एक रंगमंच है। यहाँ पर लोग नृत्य देखते हैं और बहोत अच्छा रंगमंच बना हुआ है।

की एजेंसी है। यहाँ पे बोहोत शानदार शानदार गाड़ी लगी हुई है और ये काफी बड़ी बिल्डिंग में है। यहाँ पे लोग --

लोग यहां पेट्रोल और डिजल --

मोटर है और ये बड़ा खूबसूरत लग रहा है।